जिसकी रूम कितनी अच्छी सी लग रही है आप देखिए इसका जो कलर है वह येलो कलर यानी क्रीम कलर का है इसकी जो बॉर्डर है वो ऑरेंज कलर की है जो बहुत खूबसूरत है लग रही है। आप देखिये बाहर एक बाइक और तीन साइकल खड़ी--

लोग आप लोग देख सकते है की यहाँ पे खुला आसमान है चारों तरफ कितनी हरियाली है आप देखिए आसमान कितना साफ है और यहाँ पे जो घास बीछी हुई है

हेलो गाइज आप लोग देख सकते हैं यह एक पिज्जा हाइक है जो दूसरी या तीसरी फ्लोर पर आप देख सकते हैं इसके जस्ट ऊपर छत है।

हेलो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये रोड का सीन है जहां पे एक लड़का चलते हुए जा रहा है ये एक छोटे से गांव का लग रहा है क्यू के आप देखे यहां की मिट्टी पिली है और उधर साइड देखिये दुकान और घर सब दिखाई दे रहे हैं।